पर लाल पोस्टर लगा हुआ है जिस पर सफेद कलर से एयरटेल फोर जी लि--

जग रखा हुआ है और एक पीले कलर की प्लेट है सामने दीवार सफेद कलर की है नीचे फ--

दो मेड बनी हुई है दूर खेत दिखा रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ऊपर--